--मे पैसा निकालते हैं और चश्में वाले सब स्टेट --

हा तो गाइस देखिये एक बस इधर खड़ा है और सवारी इसमें चढ़ने के लिए तैयार है और एक ठो हरा कलर का बस हैउसमे तीसरा तीन ठो सवारी जाने के लिए तैयार है लेक --

हेला गाइस देखिए इधर पेड़ पौधा है एकदम पर्यावरण संतुरस्त है हरा भरा है ओर पाईप है ओर उधर एक घर दिख रहा है ।